यहाँ पे लोग अपना-अपना मन्नत मांगने आते है यहाँ पे बहुत सारे लोग भी डेली पू --

यह विवाह भवन है यह भागलपुर रेल्वे स्टेशन के दो किलोमीटर दूरी पे है।